और एक शर्ट पेर रखी है ब्लैक एक चैन है | उसके पीछे एक शीशा लग रहा है।

ये एक फार्म हाउस है जिस पे बहोत सारी कुर्सी लगी हुई हैं और टेबल भी लगी हुई हैं। जिसमें पेड़ भी हैं और पौधेे भी हैं।

एक आदमी खड़ा है और अ बैलून ल लग रहे हैं। माला लग रही हैं और बस।

सफेद पीली और एक एक दरवाजा लगा हुआ है लोहे का।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुजफ्फर नगर कार्यालय लिखा हुआ है उसके नीचे गेट है काला कलर का और साइड में दो पिलर लग रहे हैं। साइड में एक दीवार है जो पेंट से बनी हुई है उसके पीछे पेड़ है पौधे है एक रास्ता है और जिसपे टाइल लगी हुई है।

और यहाँ लिखा हुआ ग्रामपंचायत सचिवालय सभयानी और एक इसकी जो छत है छत के ऊपर जो है वो नीले कलर का है और एक विंडो लग रही है।

बहुत सारी कार खड़ी है और एक गाड़ी पे कवर लगा हुआ है। अंदर एक घर है दो और एक घर --

जो कि जिस गेट का रंग काला है और साइड में पीले कलर का है। यहां प्लस साइन बन रहा है।